इस चित्र में मुझे एक मैदान दिखाई दे रहा है और बहोत हरियाली है वहां पे।

दारू के पिक्चर भी लगा हुआ है और उसके आगे एक बाइक खड़ी है।

इस चित्र में मुझे टेंट दिखाई दे रहा है जिसमें लॉक लगाकर रात को सो सकते हैं।

ये मुझे लग रही है कि ये असम की है।

और सामने मुझे कुछ बंबू भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे तरह तरह के पहाड़ मुझे दिखाई दे रहे हैं।

नीले पहाड़ में बरफ़ गिरी हुई है बहोत खूबसूरत लग रहा है।

दीवाल के टी_वी बड़े छोटे तरह तरह के जीसके वहां एक टी_वी चल भी रहा है।

और आगे कुछ जंगल है जो काफी ज्यादा गहरा दिखाई दे रहा है।

ये है ये एक बच्चा खेल रहा है पीले रंग की --

इस चित्र में मुझे एक घर दिखाई दे रहा है जो बंबू का है सामने एक पेड़ भी है छोटा सा।

और तरह तरह के पेड़ है यहां पे।